यह मुझे मैदान रोड दिख रहा है रोड मुझे पत्थर सिल्वर कलर के हैं और पत्थरों में लाइन खींच रही है।

उसके सामने मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग --

यह पर मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है रूम में मुझे बहुत सारे सोपे हैं सोपे --

पन्नी भी चढ़ी हुई दिख रही हैं और दुकान है दुकानों--

यहा पर मुझे एक कार दिख रही है और एक जेंट्स दिख रहा--

और देख रहे हैं और यहाँ पर मुझे कुछ --

ईंटों का सर्कल बना हुआ है और पीछे मुझे बड़े बड़े पे--

यहां पर मुझे एक पार्क दिख रहा है पार्क मुझे दो रोड दिखाई दे रहा है एक रोड है ध घर की तरफ जा रहा है।

यहाँ पर मुझे एक घर दिख रहा है घर के सामने मुझे एक रोड है रोड मुझे बाइक दिख रही है।

यहाँ पर मुझे बहुत सारी कार दिख रही है रोड है ऊपर रोड है नीचे रोड है।

पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे दो-तीन प्रकार की कार एक कार एक व्हाइट कलर की एक--

उम्म बैनर टंगा हुआ है पोस्टर लगा हुआ है।

रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है और एक लोग खड़ा है उसने व्हाइट कलर की--

वगैरह लगी है यहां पर मुझे रेड कलर ग्रीन कलर --

ओ ग्रीन कलर की भी है ऊपर ब्लैक कलर है और उसमें लोहा रखा हुआ --

पता नहीं सामने मुझे पेड़ दिख रहे हैं और इस साइड मुझे पहाड़ी दिख रही है खम्बा दिख रहा है।

और कुछ बात कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लेडीज जेंट्स हैं।

वो रोटी बना रहा है और यहां पर होटल है दो रखी है।

यहाँ पर मुझे बहुत सारी कार बाइक दिखाई दे रही है और बाइक के सामने कुछ लोग --